इसमें एक लड़का और तीन लड़कियां हैं।

ये आग बुझाने के काम आते है।

इनके ऊपर ढक्कन लगे हुए हैं।

यह एक गौशाला का सीन है।

कुछ टमाटरस के ऊपर काले दाग लगे हुए हैं।

इसमें सर्वेंट्स शरबत लेकर खड़े हैं उन्होंने ऑरेंज जूस लिया हुआ है।

इस शॉप में बहुत सुंदर सुंदर प्राइजेस रखे हुए हैं।

यह एक गोदाम है गोदाम के बाहर खुला एरिया है इसके अंदर कनक या गेहूं के ढेर लगे हुए हैं।

मंदिर की बिल्डिंग का कलर क्रीम है।

और कुछ छोटे-छोटे पिलर्स भी लगे हुए हैं।

मौसम धुंधला दिखाई दे रहा है।

जिसका नाम सहगल साइकिल स्टोर है।

और इंग्लिश में ओपन जिम लिखा हुआ है।

एक आदमी बाइक पर है जो फोन पर बात कर रहा है।

घर के बाहर बहुत बड़ा गेट है।

इसके सामने एक बाइक है बाइक काले रंग की है यह एक बहुत सुंदर बाइक है।